तालाब का पानी क्लीन है और चारों तरफ शाम होता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां कुछ समाने भी रखी हुई हैं।

पानी का बोतल भी रखा हुआ है।

यहां देख पा रही हूं एक पार्क है।

मैं यहां देख पा री हूं ये किचन रूम है जहां पर गैस रखा हुआ है।

और यहां कोई सुंदर सुंदर फ्लावर भी रखे गए हैं बहुत सारे इसमें कप --

और एक बहुत बड़ा घर भी है चारों तरफ।

रूम काफी बड़ा और अच्छा है।

यहां बहुत सारे बर्तन बड़े बड़े भगोने रखे हुए हैं।

और कई खिड़की दरवाजे भी है।

यहां बहुत सारे सोफे और बैंच रखे हुए हैं।